लोग आते हैं यहाँ से पैसा निकालने --

और एक आदमी बैठके न्यूज पेपर पढ़ रहा है और फैन भी है।

यहां पर बोहोत सारे लेडिस जिन --

और एक बोट पे लिखा श्री राजपाल रवि।

एक आदमी जा रहा है देखते --

और बोहोत बड़े-बड़े मच्छी है। छोटे-छोटे भी मच्छी है तसला में।

जो जो भगवान को चाहिए चढ़ाने के लिए वो सब कुछ मिलेगा।

खाने पीने का मसाला स्प्रे सब कुछ है तेल साबुन जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा।

येलो कलर से पेड़ दिख रहा है। विंडो दिख रहा है सब --

जग है जो इलेक्ट्रिक जग है। पानी डालते है चाय बनाते है। सब कुछ यहाँ पे रखा है। बल्ब जल रहा है। ट्यूबलाइट जल रहा है।

और यहाँ पे सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है रात का समय है।

यहाँ पे एक अंग्रेज टाइप का भी दिख रहा है।

पैर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है और सॉस भी रखा है।

यहां पे लाइब्रेरी है। बहुत बड़ा टेबल है और दू टेबल है और टेबल के बगल में कुर्सी रखा हुआ है।

और यहाँ ये इंग्लिश में लिखा है वेक अप ।

गेंदा का फूल है। हर कोई भी फूल यहाँ लेना चाहो तो यहाँ पे मिल जाएगा भगवान को चढ़ाने के लिए और जयमाला रखा है हार रखा है।

पानी का टंकी दो माहले का मकान सबकी न दिख रहा है और मंदिर भी --